नीचे में मैट बिछाया हुआ है जो की लाल रंग का है।

राइट साइड में कुछ फूल और पौधे लगाए हुए हैं।

पीछे में एक औरत है जिसमें सफेद और नीले रंग की सूट पहनी है।

दीवार पे एको सफेद रंग का बोर्ड लगाया हुआ है।

एक अह लड़की अपने हाथ में बैट ले रखी है।

उसके डंठल हरे पत्तियों से ढकी हुई हैं।

इस में ग्राउंड दिखाई पड़ रहा है।

इस दृश्य में बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं।

बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं जो कि हरे रंग के हैं और उनके तने काले और सफेद रंग की हैं।

फर्श का कलर सफेद दिखाई पड़ रहा है।

यह दृश्य जिम का है जहां पे बहुत सारे जिम वाले मशीन लगाए हुए हैं।

मर्करी नीले और गुलाबी और हरे रंग की जल रही हैं।

उस पे भी मरकरी लगा है जो कि पीले रंग की जल रही हैं।

पीछे में तिरपाल लगाया हुआ है जो की नीले रंग का है और उसको बांस से टिकाया गया हुआ है।

दो टेंपो है जो की नीले रंग की है।

साइड में एक बल्ब लगाई हुई है।

इस दृश्य मैं कुछ पानी नजर आ रही है।

पटरी का रंग काला है।

पीछे दीवार पे भगवान की फोटो लगाई हुई हैं और फूल की लड़ियाँ भी लगाई हुई हैं।

साइड में बहोत सारे मशीन रखे हो जो कि काले रंग के।

पीछे में गौशाला बनाया हुआ है उसमें गाय बैठी हुई हैं।

आगे में बहुत सारे मिक्सचर्स के पैकेट वगैरा टंगी हुई हैं।

साइड में बहोत सारे बॉल्स रखे हुए हैं बॉल्स का रंग नीला लाल गुलाबी और पीला दिखाई पड़ रहा है।

इस दृश्य में बहुत सारे स्कूटीयां दिखाई पड़ रहे हैं स्कूटी के रंग ग्रे पीला काला और मैरून दिखाई पड़ रहा है।

टेबल पर टिशू पेपर और बॉटल्स दिखाई पड़ रहा--